यह एक दुकान दिख रही है जो राखी की दुकान लग रही है और यहां पर काफी सारे राखी भी बनाई गई है और यहां पर प्रगति --

मकान के किनारे पर लाल रंग की पट्टी भी बनाई गई है।

ये यह एक बिल्डिंग है जहां पर सफेद रंग की टंकी रखी हुई है।

बगल में काफी धुप हुई है और साथ ही एक झोपड़ी बनी हुई है।

की पानी हरा है और काफी साथ भी है।

खड़ी हुई हैं और यहां एक गार्ड भी खड़ा हुआ है।

जहां पर ऊपर ए_सी लगा हुआ है और बगल में पर्दे भी रखे हुए हैं।

शायद यहां कोई सी चीज का आउटलेट है।

और यहां ऊपर पंखा लग रहा है और साथ ही लाइटें भी लगी हुई है।

यह एक सोफा सेट लग रहा है।

ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी को रोकने के लिए--

रेस्टोरेंट लग रहा है जहां पर--